इसके साथ ही उम्म इसके बाजू में कुछ पेड़ भी उगे रहे हैं।

जोकि हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे--

कार्ड बोर्ड की लकड़ी पड़ी हुई है और यहां पे एक फैक्ट्री नजर आ रही है जिसमें कुछ अलग अलग जगह बना रखी है।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

कुछ खेलने का कुछ प्ले ग्राउंड नजर आ रहा है जिसमें दिखाया गया है यहा पे--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

इस तस्वीर में दिखाया गया कि यह पेड़ पौधे नजर आ रहे है एक व्यक्ति यहां पे काम भी कर रहा है जिसमें यह--

बिल्डिंग नजर आ रही है जोकि पुराने सफेदी जैसे पीले कलर की है।

इस तस्वीर में एक व्यक्ति बोतल हाथ में लिए अपनी फोटो खींच रहा है साइड में उसके पेड़--

भी दिखाई दे रहा है और एक मंदिर जैसा कुछ नजर आ रहा--

म्यूजिक स्टूडियो बना रखा है जो की एक मॉनिटर और एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

इसमें दिखाया गया है कि यहा पर--

बिल्डिंग नजर आ रही है बहुत ही बड़ी इसमें बात का एक तिरंगा झंडा भी दिख रहा है।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

इस तस्वीर में कुछ पंखे चल रहे हैं।

यहां पर दिखाया गया है कि कुछ आगे प्रोग्राम हो रहा है कुछ भीड भी लगी हुई है।

इस तस्वीर में एक अह जो कि लैब दिखा रखा है।

जो कि कुछ पेशेंट वगैरा को देखने के लिए बना रखा है।

काम जैसे कुछ घर के अंदर फोटो रखी गई है।

साइड में उस उन्होंने अपने पंखे और हैप्पी बर्थडे का कुछ प्रोग्राम बना रखा है।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

और एक बड़ी सारी छोटी जैसी इमारत दिख रही है।

उन्होंने कुछ कपड़े पहन रखे हैं।

इस तस्वीर में एक अं इमारत दिख रही है जो की एक को हॉस्पिटल है सावान के नाम से--

वॉश फ़ेशर और टॉयलेट वगैरा की सीटें मिलती हैं।

शैडो में इसके अलग अलग डिजाइन की टैली भी लगा रखी हैं।